मुजफ्फरपुर स्टेशन है बहोत सारे आदमी ट्रेन पकरे आ पकरने आया हुआ है बे दो आदमी बैठे है एक रिक्शा है एक साइकिल है।